यहां पे तीन व्यक्ति दो लेडिस खड़ी हैं।

यहां पे वाइट वाइट कलर का गुलदस्ता जैसा जैसे मेल्ड गोडल जैसे आकार में कोई--

और कुछ फोटो में दर्शाया गया है।

यहां पे बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है ऐसा लगता है कि चार से पांच मंजिलें बिल्डिंग है।

और ऊपर लाईन का तार गया है नीचे हरी भरी घास नजर आ रही है बहुत खाली फील्ड पड़ा है।

ऐसा लग रहा है कि ये घर पत्थर का ही बनाया गया है।

खेत में कुछ किसान हरे भरे दिखाई पड़ रहा है की किसान कुछ उगाए हैं।

कूड़ा मैदान है मैदान में एक बाइक खड़ी है।